ये एक नटराज की मूर्ति है जो एक टेबल पे बनी हुई है।

जहाँ पर बहुत सारे मीट मछली --

और ये शॉप कहाँ पर है।

बहुत सुंदर लग रही हैं और यहाँ पर देखिए ये मोमबत्तियाँ लगी हुई हैं ये जगह कहाँ पर स्थित है।

कुछ बोल रहा है और ये घर की बालकोनी में खड़ा हो कर कुछ दिखा रहा है।

यहाँ पर देखिए एक बाइक का शोरूम है या फिर कोई --

ये कोई बैंक है या फिर कुछ और है समझ नहीं आ रहा --

ओहो देखो सामने कितना खूबसूरत तालाब दिख रहा है।

और ये अभी खली पड़ा हुआ है ये वो या तो सुबह का टाइम है या फिर रात।

यहाँ पर देखिए ये एक बाइक का शोरूम लग रहा है और यहाँ ऊपर छत में और दीवाल पर कुछ गुबारे भी लगे हुए हैं।

और शायद रात का समय है।

ये दुकान किस चीज़ की हो सकती है।